एहर एगो आफिस हवे एजा ए-- ए-- बगल में गाडी पार्किंग करिन हवै।

बढियाँ लगे खाए पिए हे अउ एजा साइड में का-का मढयिन हवे कुर्सी टेबुल लगी स हैउहां ला बइठ के खाते पीते।

एहर बनहीन हवै इहंर जाथे आदमी मन ते ज जानकारी लेके आथे कृषि के बारे में।